और अंदर जो है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं और एक बिजली का खंभा भी दिख रहा है।

जहां पर बहुत सारे मंजिला बने हुए है और उसके बाद मे यहाँ पर गड़िया खड़ी हुई दिख रही है बाहर की तरह एक डस्टबिन दिख रही है एक हरे कलर का एक नीले कलर का डस्टबिन है।

एक मशीन लगी हुई है और यहां पे इमारत दिख रही है यहाँ पे गड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही है।

जो की काफी सारा है और यहां पे पत्थरे के शेड दिख रहे है।

और पास मे एक दुकान दिखाई दे रहा है किराने की है जिसमे कुछ पैकेट दिखाई दे रहा है एक काउन्टर दिखाई दे रहा है और साइड मे एक जगह लिखा हुआ है शिव लिखा हुआ है।

ये चित्र में जो है एक टैंकर दिखाई दे रहा है जो की पेट्रोलियम का है। इसमें लिखा है भारत पेट्रोलियम ।

ये रास्ता दिखाई दे रहे हैं जो की लाल मिट्टी से है।

एक इंडियन ऑइल का जो ऑफिस भी दिख रहा है एक लकड़ी की सीढ़ी दिख रही है।

और यहाँ पर जो लाइटिंग भी दिख रही है नीचे लाल कारपेट दिख रहा है।

यहाँ पे रात का समय दिखाई दे रहा है।